यहाँ पे एक बंधन बैंक हे.

मार्केट जैसा लग रहा है.

एक आदमी रोड पर सफर कर रहा हे.

और बहुत से दवा पैक हुआ है।

यहां पे एक शादी या पार्टी फंक्शन है.

जो एक मकेनिक इस पत्थर मे काम कर रहा हे.

गैस का डिब्बा दिख रहा है ए --

और जे_सी_बी चलाया जा रहा मट्टी को निकासी किया जा रहा है।

एक मशीन है बनाया जा रहा--

मछली एक कचकाड़े के डब्बे में रखा हुआ और मछली वहा पे भरी हुई है.

यहां पे महिला लोग दिख रही है लग रहा है जैसे कोई पार्व छठ पार्व हैं.

और बगल में नदी दिख रहा है अगर बगल पेड़ भी दिख रहा है.

जहां पे सभी तरह के पंखे रखे हैं और वह एक अच्छी तरह से पैक हैं.

और यहाँ पर सेल यानि की बैटरी भी हे जो और वही पे टंगे हुए हे.